ये किसी गाँव का फोटो और इस गाँव उम्म इस फोटो मे कुछ तेरा नाव बकरियाँ दिखाई दे री है और इसके पीछे कुछ पेड़ दिखई दे रहे है और बगल मे एक रास्ता दिखई दे रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा पुराना पेड़ भी लगा हुआ है।

ये एक ऐन्टीक पीस है जोकी डिफ्रन्ट कलर मे है जोकी अब घर मे आराम से सजा सकते है और एसके ऊपर किसी भी तरह की फूल अप--

ये कोई कन्स्ट्रक्शन साइट फोटो दिखई दे रही है और इस फोटो मे पीछे बहुत बड़ा पहाड़ दिखई दे रहा है और पहाड़ के नीचे कुछ घरे बनी हुई है और उम्म कच्ची सड़क दिखाई दे रही है और एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।